गिटार बजा रहे हैं और एक लड़का पियानो बजा रहा हैं।

एक पुराना किला दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है इस रेस्टोरेंट में --

इस दुकान में टॉयलेट सीट्स वॉश बेसिन दिखाई दे रहे हैं।

उस बोर्ड पर लिखा है मरीन फिश एक्वेरियम ।

इस ऑफिस में बहोत सारे केबिन बने हुए हैं।

मुझे इस चित्र में एक रोड नजर आ रहा है इस रोड पर--